यह रेस्टोरेंट लकड़ियों से और बांस से बनाया गया है।

चार लकड़ी के कुर्सियां भी नजर आ रहे है।

साइड में टेबल भी दिख रहा है और दो प्लास्टिक के चेयर्स भी दिख रहे हैं।

दूसरी महिला बिस्तर पर ले बैठी हुई है।

पीछे छोटे छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

मुझे बहुत सारे लोग भी नजर आ रहे हैं और बहुत सारे बिल्डिंगें भी नजर--

यह झील में एक लकड़ी का पुल भी है।

मुझे यहां बहोत सारे लोग दिख रहे हैं आगे एक बड़ा सा स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है।

छवि को देखकर लग रहा है कि यह एक बार है।

यहां बहुत सारे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं।

इस बिल्डिंग के आगे टूटा हुआ इमारत भी है।

इस छवि में मुझे सिटिंग हॉल का नजारा दिख रहा है।

मुझे इस छवि में एक बड़ा सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

मुझे यहां हरे भरे घास भी दिख रहे हैं।

इस दुकान में मुझे चार लोग नजर आ रहे हैं और एक बच्चा भी नजर आ रहा है।

इस इमारत के आगे एक बरामदा भी है।

मुझे बहुत सारे पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

गेट के सामने एक इलेक्ट्रिक पोल्स भी दिख रहा है।

गुलाबी रंग के और सफेद रंग के फूल नजर आ रहे--

एक लंबा सा टेबल भी दिख रहा है।

इस चित्र पर दिख रहा है कि ये एक होटल है।

यहां पर दो रंग के फूल दिख रहे हैं एक पीला और एक लाल।

पीछे आईना भी दिख रहा है।

यहां सभी सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं।